गुलाबी रंग के परदे लगे हुए हैं।

दुकान के बाहर आम पल्लो रस्सी में लटका हुआ है।

पुरुष का चेहरा ढका हुआ है।

गुफा के बाहर पीला रंग का सिंदूर टिका हुआ है।

और पू पुरुष इलेक्ट्रॉनिक सामान मरम्मत कर रहे--

टेबल कपड़े से ढकी हुई है।

समान खरीद कर एक महिला और एक बच्चे जा रहे हैं।